मंदिर है मंदिर के पास में बहोत सारे लोग--

इस चित्र एक आदमी यहां पे ठहरा हुआ है एक आदमी यहाँ ऑरेंज कलर का शर्ट पहना हुआ है ऊपर फैन चालू है ट्यूब लाइट चालू है।

बड़ी है वहां पे रेड कलर के कट्टे भी ढके हुए--

मेसब ये झाड़ते है एक प्लेट है एक--

हरे कलर के इतने सारे पर्दे मारे हुए हैं इतने सारी छोटी बड़ी घास है एक बम्बू लगा हुआ है पीछे साइड में इतने सारे--

पोस्टर उम् कांच के अम्यह भी ढका हुआ हैआदमी ठहरा हुआ है उसका फेस नहीं ल दिख रहा है वो जेब में हाथ डाले ठहरा हु --

ऊपर साइड में दो तीन बेग लगे हुए है।

पिले रंगे हुए है कुछ रंग बिरंगे पिलर ढके हुए हैकुछ रेड है व्हाइट येलो ग्रीन जामुनि--

सब लोग चटाई बिछा के सोए हुए हैं। एक में ग्रीन कलर --